यह एक मोर का फोटो है। एक मोर पार्क में घूम रहा है जिसमे पार्क में आप देख सकते हैं की सामने सड़क बनी हुई है।

ये एक चिकन का फोटो है। अ देखिये कितनी सूंदर पलेटिंग की गयी है। यहां पे चिकन कबाब हैं रखे हुए हैं।

हुई है पीछे बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई है उसके सामने हरे-हरे पेड़ भी रखे गए हैं जो कि गमलों मे लगे हुए हैं ऑरेंज और ग्रीन कलर के ल--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान भी दिखाई दे रहा है शायद आज कॉलेज की छुट्टी है तभी यहाँ पर कोई भी बच्चा नज़र नही आ रहा है यहाँ पर बहुत सुंदर पेड़--

इस फोटो मे आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं और एक पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेड़ बिल्डिंग के पीछे भी नजर आ रहा है। गाड़ियाँ बहोत सारी --

के यहाँ पे कितने सारे पेन पेंसिल और कॉपियां किताबे हैं| यहाँ पे बहुत तरीके के कलरफुल स्केच भी कलर हैं।

कुछ लोग घूम भी रहे हैं लेकिन यह खेल का मैदान है।

यह मंदिर का दृश्य है जहाँ पर सुंदर मूर्ति कला की गई है बाहर से भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य आलू का है जो की आलू आज कल बहुत ही सारा खाया जा रहा है आलू का दृश्य बहोत ही अच्छा है बहोत ही सुन्दर आलू है आलू खाने सेहत के लिए बहोत ही अच्छा है।

साथ में कुछ लोग सामान खरीद रहे है कुछ लोग सामन देख रहे है रोड पर बाइक साईकिल और गाड़िया आ जा रही है यह पटरी पर सामान बहुत सस्ता मिल जाता है।

यहाँ पे ऑफ भी होता है यहाँ के कपड़े अच्छे मिलते हैं।